इस फोटो में काफी सारे--

यह फोटो किसी पेंटर की दुकान के सामने से लिया गया है।

इस मकान के सामने कुछ सीमेंट और कुछ बजरी या रेता पड़ा हुआ है।

यह फोटो किसी शोरूम से लिया गया है।

और एक पत्थरों की बड़ी दीवार भी है। दीवार के अंदर एक छोटा गेट भी दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइट भी जलती दिख रही है।

साइड में कुछ देवी देवताओं के थान बने हुए हैं।

एक पार्क में तीन शीशे से बनाए गए स्टैचू रखे हैं।

पीछे कुछ ई रिक्शा दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने लाल कलर की तीन कुर्सियां रखी दिखाई दे रही हैं।

और कुछ झालर लटकी हुई दिखाई दे रही है।

और इसके गले में एक पेले कलर की चुन्नी पड़ी है।

यहां पे छोटा सा है इस पर एक बड़ा फूल लगा है जो खिला हुआ है।

एक द्वार दिख रहा है जिसके ऊपर एक कैमरा भी लगा है और लाइट भी लगी है।